खड़े हुए है दो आदमी की एक ही हरि टी शर्ट पहने हुए हैं और सामने क्रेटें रखी हुई है नीली पिक --

सामने एक बड़ा सा हॉल दिख रहा है जिसमें साइड में टेबल है जिसके ऊपर--